यह एक मोबाइल शॉप है। यहाँ पे हमें एक बड़ा गेट दिखाई दे रहा है जो कि कॉंच का है। इसके बाहर हमें एक अ लोगो दिखाई दे रहा है। जिसपे का नाम लिखा हुआ है ऊपर हमें कुछ--

उसके बगल में एक सिंटेक्स टंकी दिखाई दिखाई दे रही है यहां पर सामने एक शेडर तीन दिखया गया है जिसमें गाड़ीया खड़ी करने के लिए एरिया बनाया गया है आस पास में बढ़िया दिख रहा हे ऊपर नीला आसमान भी दिख रहा है।

उसके बगल में हमें अंदर जाने के लिए रास्ता दिखाई रहा हैं उसके पीछे एक मशीने ने दिखई दे रही है ऊपर हमे सटल दिख रहा है उसके अंदर कैमरे दिखाई रहा हैं।

यहाँ पर सामने एक और बिल्डिंग है जिसपे ऊपर हमें कुछ छज्जे दिखाई दे रहे है कुछ खिड़किया दिखाई दे रही है बड़ा आम के पेड़ लगे हुए है ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है जिसमे सफ़ेद बदल भी दिखाई दे रहे है।

ये एक रूम के अंदर का दृश्य है यहाँ पे हम देख सकते है यहाँ पे बहुत सारी तस्वीरें चिपकी हुई है यहाँ एक कैमरा दिखाया गया है सामने एक गेट दिखाया गया है जिसपे ताला लगा हुआ है।

यहां हमें एक मंदिर दिखाई दे रहा है ऊपर नीला आसमान दिखाई दे रहा है ऊपर सफेद बादल दिखाई दे रहा है सामने से रास्ता जाता हुआ दिखाई दे रहा है।